यह एक सैलून है इस सालों के बाहर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और सैलून के अंदर भी बहोत से व्यक्ति बैठे हुए हैं।

यह एक विद्यालय है इस विद्यालय में रंगोली कॉम्पिटिशन चल रहा है।

यहाँ पर सभी लड़कियाँ कुछ-कुछ ग्रुप में डिवाइड होकर अपनी-अपनी रंगोलियाँ बना रही हैं और उसमें रंग भर रहीं हैं।

इस नदी के आजू-बाजू बहौत से हरे-भरे पेड़-पौधे लगे हुए हैं और यह व्यक्ति नाव का आनंद ले रहे हैं।